किताबे हैं डिस्काउंट बुक स्टोर है आदमी है औरत है।

कांच का दरवाजा है चित्र है आदमी है सोफा है लाइटे हैं। --

पेड़ हैं। पुरानी बिल्डिंगे हैं। लो इंसान हैं।

सजावट हे । घर हे ।